स्टेशनरी है स्टेशनरी की शॉप खोले हुए हैं।

ये आपको यहाँ पे एक नई गाड़ी दिख रही है।

यहाँ पे अमूल के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं।

लोगों की बहोत सारी भीड़ें हैं।

ये आपको एक सिंगार की दुकान दिखाई दे रही है।

ये एक मैदान है मैदान टाइप सबको दिख रहा है।

जो की आपको दिख रहा है वहां पे लिखा हुआ है।

पेड़ आपको दिखाई दे रहा है।

माउंट कॅरियर सेंटर भागलपुर।

ये बुक स्टेशनरी है बुक स्टेशनरी टाइप सब दिख रही है।

ये कोई मुस्लिमो का कॉलेज है।

सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं जंगल है पहाड़ है।